यहाँ इस दुकान के ऊपर सभी कंपनियों के जूते मिलते हैं जैसे कैंपस रेड चीफ और आदि।

इसका रंग गोल्डन रंग की है।

होटल का नाम है होटल कैलाश टावर ।

ग्राउंड शॉपिंग कंपलेक्स के अंदर अनेक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

ये व्यक्ति बैठकर यात्रा करेंगे।